सारी मशीनें रखी होती है जहां पर ऑपरेशन किया जाता है।

ये एक गार्डन है जहां पर--

हरियाली झाड़ है जहां आप देख सकते हैं कि हरे भरे झाड़ दिख रहें हैं।

ये पूरी टमाटर की ही टोकरी दिख रही हैं।

गाड़ियां हैं जैसे कुछ ठेले भी है जहां पर कुछ खाने की चीजें है लोग व्यक्ति इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं।

शॉल और डुबट्टे खरीद रहें हैं तो कुछ लोग कुछ और चीजें खरीद रहें हैं।

फिर से डिस्कस कर रहे हैं वर्क के बारे में--

उसमें से सामान निकाल रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

जिसमें अलग अलग कमरे भी दिख रहे हैं यहां पर एक दो तीन चार पाच छे स--

काहे और एक दादाजी उसे देख रहे हैं।

लोग जा रहे हैं बस का पूरा डेकोरेशन हुआ हुआ है यहां पर--

और अलग अलग तरह का डेकोरेशन हुआ होआ है।

आ है जगह छोटी हुई है ये एक बिदारे वाली बस --

ये यहां पर बहोत सारे व्यक्ति और --

और साइड पे अलग अलग तरह का डेकोरे--

करते वक्त वो योगासन कर रही है साइड में--